C में एब्स्ट्रैक्ट क्लास और पुरे वर्चुअल फंक्शन के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न करना सीखेंगे Abstract क्लासेस Pure वर्चुअल फंक्शन हम यह एक उदाहरण की मदद से करेंगे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
एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमेशा बसे क्लास होती है
इसमें कम से काम एक पुरे वर्चुअल फंक्शन होता है हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टैंस नहीं बना सकते
अब पुरे वर्चुअल फंक्शन देखते हैं
पुरे वर्चुअल फंक्शन बिना बॉडी का एक फंक्शन है
यह बेस क्लास में परिभाषित नहीं होता है
यह इस प्रकार परिभाषित होता है वर्चुअल वॉइड virtualfunname0 डिराइव्ड क्लास को फंक्शन को ओवर्राइड करना ही होगा
नहीं तो कम्पाइलर एक एरर देगा
फंक्शन को कार्यान्वित करना डिराइव्ड क्लास पर निर्भर करता है
अब एक उदाहरण देखते हैं
मैंने पहले ही एडिटर पर कोड टाइप कर लिया है
मैं इसे खोलूंगी
ध्यान दें हमारा फाइल नेम abstractसीपीप है
इस उदाहरण में दो नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है
अब पूरे कोड को समझते हैं
यह आईओस्ट्रीम हमारी हैडर फाइल है
यहाँ मैं एसटीडी नेमस्पेस उपयोग कर रही हूँ
यह एब्स्ट्रैक्टिंटरफेस नामक क्लास के लिए घोषणा है
फिर हमारे पास पब्लिक स्पेसिफायर है
इसमें हमने नंबर्स नामक वर्चुअल फंक्शन घोषित किया है
यह 0 से इनिशिअलाइज़ होता है
फिर हमारे पास एक non वर्चुअल फंक्शन है
और आ एवं ब दो इंटीजर वेरिएबल्स हैं
यहाँ हम इनपुट फंक्शन एक्सेस करते हैं
इसमें हम नंबर्स आ और ब को स्वीकार करते हैं
यह एड नामक एक डिराइव्ड क्लास है
यह बेस क्लास एब्स्ट्रैक्टिंटरफेस की प्रॉपर्टीज़ को इन्हेरिट करता है
यहाँ हम फंक्शन नंबर्स को ओवर्राइड करते हैं
इसमें हम दो नंबर्स का एडिशन क्रियान्वित करते हैं
और परिणाम को इंटीजर वेरिएबल सुम में संचित करते हैं
फिर हम परिणाम प्रिंट करते हैं
यहाँ हमारे पास एक अन्य डिराइव्ड क्लास सुब है
यह बेस क्लास एब्स्ट्रैक्टिंटरफेस को भी इन्हेरिट करता है
इसमें दोबारा हम फंक्शन नंबर्स को ओवर्राइड करते हैं
और यहाँ हम दो नंबर्स आ और ब के डिफरेंस की गणना करते हैं
फिर हम डिफरेंस प्रिंट करते हैं
यह हमारा मेन फंक्शन है
यहाँ हम क्लास एड का एक ऑब्जेक्ट ओबीजे1 बनाते हैं
फिर हम ऑब्जेक्ट ओबीजे1 उपयोग करके इनपुट और नंबर्स दोनों फंक्शन्स को कॉल करते हैं
फिर हम क्लास सुब का एक ऑब्जेक्ट ओबीजे2 बनाते हैं
फिर से हम ऑब्जेक्ट ओबीजे2 उपयोग करके दो फंक्शन्स को कॉल करते हैं
और यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है
अब प्रोग्राम निष्पादित करते हैं
अपने कीबोर्ड पर Ctrl Alt और ट कीज़ एक साथ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें
कम्पाइल करने के लिए g स्पेस एब्स्ट्रैक्ट डॉट सीपीप स्पेस हाइफेन ओ स्पेस एबीएस एंटर दबाएं
टाइप करें डॉट स्लैश एबीएस एंटर दबाएं
यह इस प्रकार प्रदर्शित होता है Enter थे नंबर्स मैं 9 और 4 एंटर करुँगी
आउटपुट प्रदर्शित होता है सुम इस 13 हम दोबारा देखते हैं Enter थे नंबर्स मैं 8 और 3 एंटर करुँगी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
अपनी स्लाइड्स पर वायस आते हैं
इसको सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा एब्स्ट्रैक्ट क्लास उदाहरण क्लास एब्स्ट्रैक्टिंटरफेस पुरे वर्चुअल फंक्शन उदाहरण वर्चुअल वॉइड numbers0 एक नियत कार्य में एक एब्सट्रैक्ट क्लास स्टूडेंट बनायें
प्योर वर्चूअल फंक्शन इन्फो बनायें
फंक्शन में स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर स्वीकार करें
दो डिराइव्ड क्लास मार्क्स और स्पोर्ट्स बनायें
मार्क्स में तीन स्टूडेंट्स के मार्क्स स्वीकार करें
स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स में स्कोर किये हुए मार्क्स एंटर करें
total मार्क्स की गणना करें
फिर एक अन्य डिराइव्ड क्लास रिजल्ट बनायें
इसमें स्टूडेंट का नेम रोल नंबर और टोटल मार्क्स प्रदर्शित करें
निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद